यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग बन रही है जहाँ पे वाइट कलर के टाइल्स हैं।

रेड कलर से लाइनिंग बनी हुई हैं ब्लैक कलर से बनी हुई हैं और ऊपर शेड डला हुआ है।